बहुत झुम्मार लगा हुआ है लाइट जल रहा --

री गिया हुआ है उधर से एक सड़क भी जा रहा है उसके --

रा है दो बाइक लगा हुआ है।

आलग ई अंदर में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

तीन-चार लड़के दिख रहें हैं। ई गंजीया का गंजी में था। --

एगो पाइप है जो बिजली का तार है।

से कोई एक लड़ पर आदमी चढ़ के देख रहा है मर --

मेला जैसे है कुछ इस टाइप का यहाँ मेला ही है।

भरा हुआ है बॉल लाइटिंग बहुत ज्यादा --

बोर्ड लगा हुआ है। अंद --